ढाबे का नाम है महाकाल रेस्टोरेंट भोजननाय ।

तुरे को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे--

ट्रेंडिंग कॉप वेल्डर एंड कटिंग सॉल्यूशन --

नलके भी दिखाई दे रहे है और पास में एक--

यह एक पाइप की दुकान दिखाई दे रही है।

और बाहर सड़क पर काफी सारी बाइक --

यहां पर काफी सारी औरते दिखाई दे रही है और एक औरत--

और ऊपर काफी सारे पोस्टर भी दिखाई दे रहे--

बाजार भी दिखाई दे रहा है।

उसके बाहर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

पास में एक गेट भी दिखाई एक दे रहा है।